और उनके घर का एंट्रेंस दिखाई दे रहा है।

अलग अलग साइज के अलग अलग कलर के यहां पर कप रखे हुए है।

कुछ यहां पर ट्रॉफी दिखाएं दे रही है।

यहां सामने एक क --

वाटर कूलर सामने दिख रहा हैं।

कुछ लोग यहां पर चल रहे हैं एक गाड़ी यहां पर दिखाई दे रही है।

बैनर लगा हुआ है उसके सामने खाली जमीन है।

बॉटल रखी हुई हैं और एक--

वर्कर यहां पर दिखाई दे रहा है।